इसमे एक मुख्य द्वार है जोकि लोहे का है तथा उसके बगल में जो दीवारें हैं वह पीले रंग से रंगी है।

इस चित्र में महाऋषि यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चित्र दिखाया गया है।

इस मेट्रो स्टेशन का ज्यादा तर स्ट्रक्चर लाल व सफेद रंग का है।

इस पर अनेकों टाइल्स लगी हैं तथा टाइल्स के एक से दो फिट पर पीली पट्टी लगी हुई है।

तथा इन चेयरो पर अनेकों आदमी बैठे हुए हैं।

तथा इस ऑडिटोरियम का रंग सफेद है।

इस टी स्टॉल पर तीन बोतलें रखी हुई हैं।

यह दोनों भैंसे पानी के पोखर में खड़े हैं उसके सामने आनेको हरे पेड़ हैं।

इनके के सामने चार से पांच लाइटों वाले खंभे हैं तथा एक एक गार्डेन के आगे एक ट्रक है जो कि लाल रंग का है।

इलेक्ट्रिक सीढ़ी भी है तथा गुलदस्ता भी है सजावटी के लिए--

के अगल बगल में ज्यादा से ज्यादा काई दिख रही है तथा कुछ हरे पौधे हैं।

इस चित्र में गार्डन को दिखाया गया है। इस गार्डन में बहोत सारे गुलाब के पौधे दिख रहे हैं जो कि लाल रंग के हैं।

तथा उसके सामने दो हिरण के स्टैचू दिख रहे हैं एक सफेद है तथा एक भूरा है।

बगल में एक बी_आर होंडा की कंपनी है।

कमरा दिख रहा है जो कि सफेद रंग का है।

इसमें एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की है।

उस पर कि हरे रंग के टेंपो दौड़ रहे हैं।

इसके अगल बगल चेयर रखी हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की पीले रंग से रंगी हुई है यह बिल्डिंग दो मंजिले की है।

इस मन बिल्डिंग के सामने बड़ा का मैदान व एक सड़क है।

जिसमें से एक नीला व पीले के संगम से अनेको बैलूंस दीवार पर चपके है।

एक मंच है जो की मट्टी के रंग की है तथा उसके सामने आने को कुर्सियां है।

इस चित्र में एक शादी का समारोह हो रहा है।

बिल्डिंग के एंटरिंग फेस पर एक ब्राउन भूरे रंग का गेट लोहे का लगा हुआ है।

यह बिल्डिंग कोई प्रशासनिक क्षेत्र है तथा इसके अगल बगल अनेकों हरे प पेड़ लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के इंटर फेस पर एक यु आकार का लोहे का गेट है जिस पर की कार्यालय मंडलायुक्त लखनऊ सफेद रंग से लिखा हुआ है।

यह कोई पर्यटक स्थल है जो कि संगमरमर का है तथा इसमें अनेको महिलाएं व पुरुष हैं।

इसके सामने एक बड़ा सा एक दीवार जैसा पीले रंग का एक महल जैसा आकृति है।

चेयर के सामने एक एल_इ_डी लगी हुई है।

यह कोई होटल का दृश्य है जो इसमें अनेकों टाईल्स हैं।

इसका छत सफेद रंग से रंगा हुआ है।

इस बिल्डिंग में मुख्य रूप से एक गेट है जो कि रंग का है।

खराब सामान पड़ा हुआ है।